बिल्डिंग है बगल में गार्डन है एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है।

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

लाल रंग की बोतल है। बगल में गार्डन है उसमे ताज़ा-ताज़ा पेड़ है।